जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक चर्च है इस चर्च में जेसस क्रिस्ट का फोटो बना हुआ है कुछ आदमी--

सिंदूर रखा हुआ है लाल कलर की बिंदी भी रखी हुई है मेहदी भी रखा हुआ है एक सादा कलर का--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक बड़ा-सा तालाब है तालाब के उस पार बहुत सारे वृक्ष भी दिखाई दे रही हैं ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक बिल्डिंग है इसकी कलर ब्लू और व्हाइट में है और ब्लू से कुछ लिखा हुआ है दिवार पर यहां पे बहुत सारी खिड़कियां भी है ।

ब्लैक से कुछ लिखा हुआ हैं नौ दस भी लिखा हुआ हैं।

यहाँ पर ऐरो का सिम्बल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो कि काला कलर का कपड़ा पहना है--

एक चक्‍का लगा हुआ है जिसमें सामान लोड है और एक आदमी टी-शर्ट पहना हुआ है ग्रीन कलर का --